यहाँ पे हम एक पोस्ट ऑफिस देख पा रहे है इस पोस्ट ऑफिस के--

कुछ इलेक्ट्रिक बोर्ड एंड तार भी देख सकते हैं इसके अलावा यहाँ पे हम कुछ बोर्ड और पोस्टर भी देख पा रहे हैं।

यहाँ पे हम एक होटल देख पा रहे है होटल का नाम है होटल गेटवे कर्नाटका इस होटल के--